शादी लग चुकी है। मंडपों का डेकोरेशन तभी भी हो रहा है। यहाँ पर कुछ गार्डन नज़र आ रहे हैं। मंडप दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर का गेट लगाया हूआ दिखाई दे रहा है। बहोत अच्छ है।

इस चित्र में हमें बैंगल्स दिखाई दे रहे हैं। लोग सामन खरीद रहे हैं। यहाँ पर चूड़ियों की दुकान देख रहे हैं। हम कृष्णा बैंगल्स फ्रॉम जयपुर दिख रहा है।

स्टूल हरे रंग का है | यहाँ से एक बुके बेचा गया है बाकी के बुके बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहें हैं जिनमे बोहत सारे फूल हैं बिभिन्न कलर के फ्ला --

ये पेड़ो पर नारियल दिखाई नहीं दे रहे हैं। नीचे हरा हरा है और अ -एक-अ ब्रिज इधर --

ऊपर हमें गोल चक्र दिखाई देते है एक बड़ा सा चक्र है जो हमें समय दर्शाता है जिसे हम घड़ी भी कह सकते है इसके बाजू में दो चक्र और प्रस्तुत है दो चक्रो में कलर नहीं है एक में कलर है।

यहाँ पर लोगो ने कोट पेंट पहना हुआ है एवं काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं ।

एक स्कूटी बाहर दिखाई दे रही है। यह कोतवाली दिखाई दे रहा है। कुछ कस्टमर दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग का कलर लाल दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड का कलर पीला दिखाई दे रहा है।

प्रस्तुत चित्रण में हमें पेड़ दिखाई दे रहा है। यह पेड़ बहुत ही घना दिखाई दे रहा है। पेड़ के बाजु में हमें हैंड पंप दिखाई दे रहा है। हैंड पंप से पानी निकालनें के लिए बाल्टी भी रखी गई है।

प्रस्तुत चित्र हमें किसी मॉल का नज़र आता है। शॉपिंग मॉल का यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों के छाते भी नज़र आ रहे हैं जो कलरफुल हैं। यहाँ पर हमें शैम्पू न --

अंदर हमें एच.पीं पेट्रोल पम्प नजर आ रहा है। इस पेट्रोल पम्प के ऊपर हमे एक बस नजर आ रही है। बस के साथ साथ यहाँ पर कारे भी--